सड़क दिखाई दे रही है। सड़क पर बहोत सारी बस जा रही हैं। खंबे लगे हुए --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

सामने कुछ टेबल लगी हुई है जिसपर खाना --

जिसमें एक मूर्ति रखी है। पीछे हमें बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। कुछ बंजर पेड़ --

बालिका इन्टर कॉलेज हमीरपुर लिखा हुआ है।

अपने कार्ड शीट रखे हुए अम्म कुछ बना रहे हैं। सामने एक अध्यापिका बैठी है जिन्होंने पिंक कलर की --

हमारे सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में हमें एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने --

एक लड़का दिखाई दे रहा है। जिसने येलो कलर का रुमाल और ब्लैक कलर के कुर्ता पहना हुआ है।

एक गेट बना है जो कि लोहे का है जिसका कलर काला है। चारों तरफ गेट के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

एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो माइक में बोल रहा है। ऊपर एक सांता क्लॉस खड़ा हुआ है। जिन्होंने --

हमारे सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक मैदान दिखाई दे रहा है। मैदान के सामने एक घर दिखाई दे रहा है।

अ सबसे ऊपर कुछ कपड़े दिखाई डले हुए दिखाई दे रहे है। सामने एक --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

सामने द शाइन लिखा हुआ है। एक मूर्ति रखी हुई है।

और नीचे रेड कलर का कार्पेट बिछाये --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

बोहोत सारे ठेले लगे हुए हैं जिनपर हर तरह की सब्जी दिखाई दे रही है। बीच में सड़क है।

हमारे सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसपर झण्डा लगा हुआ है।

ब्रिज को के दोनों साइड रेलिंग उठी हुई है। हमे पानी दिखाई दे रहा है। पानी के --

या प्लेटफार्म दिखाई दे रहा है जोकि कांच का बना हुआ है चारो तरफ रेलिंग बनी हुई है।

एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसमें हर हर तरह के भगवान की फोटो दिखाई दे रही है।